दरख्त हैजिनके कुछ पत्ते पीले हलके पीले है कुछ के सब--

ये सड़क किनारे एक कैफेटेरिया का ओपन मंजर है जिसमें मुख्तलिफ चार पांच टेबले लगी हुई है जिसके इर्द-गिर्द --

यहाँ पर एक स्टूल है जिसका रंग ब्लैक है काला है और नीछे मुफ्रातलब किसम के दुपट्टे वगेरा पड़े हुए है एक दत्ती में रखे गये है ।

अमरुद माल्टा और अन्नार वगेरा मह्जुद है खुले हुए पड़े है ताकि इसे आसानी से देखे सके और लोग यहाँ से फ़ल खरीद कर घर ले जा सके ।

के जैसे बोर्ड लगे हुए है जैसे इसमे बॉडी शॉप है एम जी मिरर लगा है ।

वाइट कलर का निशान बना हुआ है ये शीशों और एक बड़ी इमारत है जिसके नीचे होटल जागीर पेलेस का नाम भी लिखा हुआ है जिस --

यहां पे लोग अमूमन सैर और सेहत के लिए आते हैं ये जगह --

दरबार खान लिखा हुआ है जिसके नीचे शास्त्रीय नगर लिखा हुआ है ये इलाका है जहां पे लोग एक सब लड़का--

वह ब्लैक कलर का जैकेट पहनी हुई है सामने एक टेबल है जिसपे वो पिज्जा रख के बेठ के खा रहे है ।

ये पुरानी बिल्डिंगस को साफ और महफुज़ रखने के लिए जगह बनाई जाती है ।

लोगों का रश है एक स खाश चबूतरा बनाया गया है जिसके ऊपर सब --

ये एक मोटरसाइकिलो की मरम्मत के लिए और सिर के लिए एक अच्छा पॉइंट है ।